कई लोग छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और यहां पर एंट्री गेट भी है।

इस एरिया में एक विंडो भी नजर आ रही है।

तरह तरह के गेंदे में से ऑरेंज गेंदा--

यह एक क्लास रूम जैसा लग रहा है।

जिसमें कि सफे अ बीच में रोड है।

यहां पर निर्देश का ब्लू बोर्ड भी लगा हुआ है।

जिसमें बहोत हरियाली दिख रही है।

पार्क का नाम लकी प्रिया देवी बुरानी--